मेडिकल है। ये मेडिकल पे दवाईयाँ मिलती है। मेडिकल पे हर तरीके की दवाई मिलती है। हाथ ये अंकल जो खड़े है इनका हाथ टूटा है तो ये कैसे अपनी दवाई लेने जा रहे होंगे।

यहा पे जो घर बन रहा है और यहा पे इटे वेगरा सिमेन्ट मिट्टी वेगरा सब चीज रखी हैं। एक अंकल जी बना रहे हैं। ईटों से और बहोत बेकार सा घर लग रहा हैं। --

ये डांस करने के लिए जा री हैं और बहोत सारे बच्चे बैठे हैं डांस करा हुआ है इन लोगों ने भी और ये मैंडम कुछ नाम बोल रही है।